यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का रंग सीमेंट का दिखाई दे रहा है बिल्डिंग में खिड़िकयां दिखाई दे रही खिड़कियां छोटी छोटी दिखाई दे रही है।

वो आगे की तरफ खड़ी हुई दिखाई दे रही है सड़क पर सेफद कलर के पट्टे भी बने हुए दिखाई दे रहा हैं।

उसमे लाल पत्ते डले हुए दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंग के आगे की तरफ एक कार कार खड़ी हुई दिखाई दे रहे है दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसका कलर का --